बहुत अच्छा ऊपर से फोटो लिया गया है सबका चित्र आया हुआ--

पचास रूपए कम से कम सौ रुपए सत्तर रुपए टीकिट रहता है उसका खुद का और बहुत ही अच्छा रहता है जोकि अ पूरा घेरा हुआ होता है फिर उसमें खारी चढ़ता हैं।

पूरा लाइन हैं और इतना भीड़ हैं की क्या बताए आप देख पा रहे हैं की इतना भीड़ हैं फोटो पर इतना भीड़ हैं की पैर रखने की जगह भी नहीं होती हैं इतना भीड़ हैं बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा

और ये सोच में पड़ी है की क्या हो रहा हैं कैसा हो रहा है करके और यहाँ बाल्टी पड़ा है उसमे पूरा धोती है वोती है और अच्छे से रखती है ।